और कुछ लोग कराटा का ड्रेस पहन के है जो इसका रंग के सफेद है

जिसको कुछ लोग पूजा कर रहे हैं।

यह एक रूम है जिसमें दुकान है।

यह पिक्चर किसी घर के छत पर से ली हुई है और स्टील का रेलिंग भी दिख रहा है।

बड़े बड़े टावर भी लगे हुए हैं यहां पे अधिकतर घरों का रंग सफेद है।

और इस ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं।

इसके दीवार का रंग सफेद है और यहां पे बहुत सारे लकड़ियाँ की रैक है जिस पे साड़ी ये सब कपड़ा ये सब रखा हुआ है।

एक बगल में करकट का भी कुछ है और इसके अंदर बहोत सारे पेड़ हैं।

यहां पे हैंड पंप यानी कल भी रखा हुआ है जो कि दो है।

और कुछ लोग घूमने भी आए है और यहां पे बहुत सारी गंदगी भी है।

और यह अंकल सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए हैं।